यहाँ देखिये माहोल एक नंबर है सूरज ढूब रहा है चारो तरफ से पहाड़ टाइप का कुछ दिख रहा है और यहाँ तार ताड़ है इधर उधर है फलाना थीकाना है।

एक अलमारी है एक नंबर और यहा पे दो पानी के बोतल है और एक यहा पे एक पानी गरम करने वाला उसके बगल में है।

यहा एक नम्बर यहाँ बेत पैक नंवबर का बोत लग्से ची जब अ कलर कलर का टी.वि. है उसके ऊपर